ये किसी कॉलेज की जगह लग रही है पीछे की और ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं जो बहोत बड़े बड़े हैं और बिल्डिंग्स बनी हुई है।

सामने की ओर ढेर सारा झाड़ियां लगी हुईं हैं जो हरे रंग की दिखाई दे रही हैं।

यह एक खदान की फोटो है जहां पर चट्टानों को तोड़ तोड़कर गट्टी बनाई जा रही है।

आगे की ओर कुछ चीजें रखी हुई हैं जिनपे अलग अलग ऑफर की चीजें लगी हुई हैं।

यह एक सिलेंडर विक्रेता की दुकान है जिसके अंदर ढेर सारे सिलेंडर रखे हुए हैं।